और यह बाइक जो है लाल रंग और काले रंग की भी हमें दिखाई दे रही है।

हमें चप्पलों को आगे अअ छोड़े हुए भी दिखाई दे रहे है।

और यहाँ पे हमें रास्ते को भी देखने को मिल रहा है और हमें पौधों को भी झाड़ो को भी देखने को मिल रहा है।

--और यहाँ रास्ते पर हमे पिल्लर्स को भी देखने को भी मिल रहा है और यहाँ पे नीले रंग का आसमान को भी देखने को मिल रही है।

पिण्डाल डाला गया है और यहाँ पे बढ़ा सा टेबल को भी रखा गया है और एक व्यक्ति जो--

हरे-भरे घास और पौधों को भी दिखाई दे रहा है।

अअ हरे-भरे झाड़ो को भी दिखाई दे रहा है।

जिस पर लिखा हुआ है की बादशाह एंड --

देखने को मिल रहा है यहाँ ढ़ेर वयक्ति जो खड़े हुए भी दिखाई दे रहे है।

एकअअअ चार-चार अ काले रंग के बॉटल्स को भी हमे देखने को मिल रहै है ।

इस चित्र में हम देख सकते है की यह एक बहुत ही बड़ा--

विद्यालय को हम देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है की शासकीय--

मदन अ लाल स्कूल --

और यहाँ पे आगे जो है यहाँ पे एक साइकिल शॉप साइकिल को भी हमें देखने को मिल रहा है।

और यहाँ पर नीले रंग के शिप को भी हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो हमें--

इस चित्र में हम देख सकते है की यहाँ पे अअ जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है।